अ गेट लाल रंग के रंगे हुए हैं।

इस चित्र में एक बस स्टैंड दिखायी दे रहा है।

बहोत बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे नजर आ रही हैं।

प्रोजेक्ट बनाते दिखाई दे रहे। पीछे की तरफ शिक्षिका --